ये तस्वीर में हमें एक साइकल नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारे शिक्षक दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हम बहुत सारे मनुष्य को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें काले रंग की गाड़ियों को देख सकते हैं।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

इस पिक्चर में हमे सफेद रंग के बादले नजर आ रही है।

पिक्चर में हमें बहोत सारे घास और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में हम एक बस को देख सकते है।

यह पिक्चर में हम पेड़ों को देख सकते हैं।

इस तस्वीर मे हम एक नदी को देख सकते हैं।

यह छवि में हम एक रूम को देख सकते हैं।

यह छवि में हम एक मकान को देख सकते हैं।

यह तस्वीर में हमें लाइटें दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर भी हमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस छवि में हम एक पानी की बोतल को देख सकते हैं।

यह छवि में हमें बहोत सारी बालूये नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक ग्राउंड दिख रहा है।

इस छवि में हमें बहुत सी दुकाने दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हम एक मकान को देख सकते हैं।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

इस छवि में हमें बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है ।

इस तस्वीर में हम एक बड़े से मकान को देख सकते है।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

इस तस्वीर में हम बहुत सारे पौधों को एक लाइन में सजे हुए देख सकते हैं ।

ये तस्वीर में हम एस_बी_आई नामक एक बैंक को देख सकते है।